जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ए वन क्रीम रेस्टोरेंट लिखा दिखाई दे रहा है।

एक टावर लगा दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं पीछे बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।